ऊपर भी येलो कलर का दीवाल दिखाई दे रही है। साइड में वाइट पर्दे दिखाई दे रहे हैं। साइड में एक एग्जिट फेन दिखाई दे रहा है।

जो पत्थर है वो खंड के खंड में --

के पीछे एक एलो कलर का कुछ रखा दिखाई दे रहा है ऊपर बोहोत बड़ा टीन शेड दिखाई दे रहा है और बल्ब दिखाई दे रहे हैं और दूरी पर कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है।